नमस्कार जीचेम्पेंट में बेसिक आपरेशंस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मौजूदा फाइल खोलना टेक्स्ट ऐड और एडिट करना ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट मूव फ्लिप और रोटेट करना ऑब्जेक्ट को वर्गीकरण और पंक्तिबद्ध करना ऑब्जेक्ट्स को कट कॉपी पेस्ट और डिलीट करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोलने के लिए दश होम पर क्लिक करें
प्रदर्शित सर्च बार में टाइप करें जीचेम्पेंट जीचेम्पेंट आईकन पर क्लिक करें
अब मौजूदा फाइल खोलकर ट्यूटोरियल को शुरू करें
फाइल मेन्यू पर क्लिक करें ओपन सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें
फाइल्स और फ़ोल्डर्स वाली विंडो खुलती है
यहाँ से फाइल का नाम प्रोपेन सेलेक्ट करें
फाइल खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करें
प्रोपेन स्ट्रक्चर के नीचे कुछ टेक्स्ट जोड़ते हैं
टूलबॉक्स से एड ओर मॉडिफाई आ टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें
टेक्स्ट टूल प्रॉपर्टी पेज खुलता है
प्रॉपर्टी पेज क्षेत्र रखता है जैसे फैमिली स्टाइल साइज अंडरलाइन और कुछ अन्य
फैमिली फॉण्ट नेम्स की सूची रखता है
अब सूची में नीचे जायें
मैं फैमिली में से एरियल ब्लैक सेलेक्ट करुँगी
प्रोपेन स्ट्रक्चर के नीचे डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
आप ग्रीन बॉक्स में बंद टिमटिमाता हुआ कर्सर देख सकते हैं
कंपाउंड का नाम प्रोपेन टाइप करें
अब स्टाइल को बोल्ड इटालिक से बदलें
टेक्स्ट प्रोपेन को सेलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक पर क्लिक करें
मैं फॉण्ट साइज 16 तक बढ़ाउंगी
सूचि में 16 पर जाएँ
और इस पर क्लिक करें
टेक्स्ट में बदलाव को देखें
आगे अंडरलाइन फीचर उपयोग करें
यह ड्राप डाउन सूची रखता है कुछ विकल्पों के साथ नोने नन सिंगल सिंगल डबल डबल और लो लो सिंगल सेलेक्ट करें
अब टेक्स्ट का कलर बदलें
टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है
कलर क्षेत्र में ड्राप डाउन एरो पर क्लिक करें आप यहाँ भिन्न कलर्स देख सकते हैं
मैं पर्पल सेलेक्ट करुँगी
हम टेक्स्ट की पोज़ीशन भी बदल सकते हैं
पोज़ीशन क्षेत्र 100 से 100 तक रेंज रखता है
अब देखते हैं टेक्स्ट कैसे बदलता है टेक्स्ट सेलेक्ट करें
माउस से अप एरो त्रिभुज पर क्लिक करें
टेक्स्ट ऊपर जाता है
इसी तरह अगर हम डाउन एरो त्रिभुज पर क्लिक करें तो टेक्स्ट नीचे आता है
अब टेक्स्ट को सामान्य स्थिति में लाएं
पोज़ीशन क्षेत्र में 0 टाइप करें
और डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
पहले ट्यूटोरियल का नियत कार्य खोलें
स्ट्रक्चर्स को n हेक्साने और n आक्टेन लेबल करें
टेक्स्ट का फॉण्ट नेम फॉण्ट साइज अंडरलाइन और कलर बदलें
आपका पूरा नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
अब ऑब्जेक्ट्स को मूव और सेलेक्ट करना सीखें
टूल बॉक्स से सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
पेंटाने पर क्लिक करें
माउस बटन को छोड़े बिना इसे अलग पोज़िशन में खींचें
अब माउस बटन छोड़ दें
आगे ऑब्जेक्ट को रोटेट करें
ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
प्रॉपर्टी पेज टूल्स रखता है फ्लिप थे सिलेक्शन हॉरिजोंटली फ्लिप थे सिलेक्शन वर्टिकली रोटेट थे सिलेक्शन
इन टूल्स को उपयोग करने के लिए पेंटाने पर क्लिक करें
रोटेट थे सिलेक्शन विकल्प पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर जाएँ और माउस को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखें
माउस को clock वाइज और anti clock वाइज दिशाओं में घुमाएं
ऑब्जेक्ट के रोटेशन को देखें
अब ऑब्जेक्ट को फ्लिप करना सीखें
अब पैंटेन स्ट्रक्चर को क्षैतिज के समान्तर फ्लिप करें
स्ट्रक्चर को क्षैतिज के समान्तर फ्लिप करने के लिए फ्लिप थे सिलेक्शन हॉरिजोंटली टूल पर क्लिक करें
यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और अपने आप अपना फ्लिप थे सिलेक्शन वर्टिकली उपयोग करें
अब ऑब्जेक्ट्स को वर्गीकरण और पंक्तिबद्ध करें
ऑब्जेक्ट्स के वर्गीकरण के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें
इसके लिए एडिट मेन्यू पर जाएँ सिलेक्ट अल्ल पर क्लिक करें
या आप एकसाथ CTRL और आ कीज़ दबा सकते हैं
किसी एक ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें
कांटेक्स्ट मेन्यू खुलता है
ग्रुप andओर अलिग्न ऑब्जेक्ट्स आप्शन सेलेक्ट करें
एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
ग्रुप चेक बॉक्स पर क्लिक करें
अलिग्न और स्पेस इवेनली विलकपों को अनचेक करें अगर ये सेलेक्टेड हैं
ओक बटन पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स एकसाथ वर्गीकृत हुए हैं
अब ऑब्जेक्ट्स को पंक्तिबद्ध करें
सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए CTRLA दबाएं
किसी एक ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें
कांटेक्स्ट मेन्यू खुलता है
ग्रुप प्रॉपर्टीज विकल्प सेलेक्ट करें
अलिग्न चेक बॉक्स पर क्लिक करें
अलिग्न विकल्पों के पास ड्राप डाउन सूची है
इसके पास ऑब्जेक्ट्स को पंक्तिबद्ध करने के लिए कुछ विकल्प हैं
मैं लेफ्ट सेलेक्ट करुँगी
ओक बटन पर क्लिक करें
बदलाव देखें
यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और ओब्जेक्स को पंक्तिबद्ध करें आपके अपने अन्य अलिग्न विकल्पों के साथ
अब कट कॉपी और पस्ते विकल्पों का उपयोग करना सीखें
एडिट मेन्यू पर जाएँ
यह बेसिक एडिट विकल्प रखता है जैसे कट कॉपी पेस्ट और क्लियर इन विकल्पों के लिए सामान्य शार्ट कट कीज़ हैं कट के लिए CTRLX कॉपी के लिए CTRLC पेस्ट के लिए CTRLV जीचेम्पेंट में भी काम करेंगे
सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल उपयोग करके एक या अधिक ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें
ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें
कट के लिए CTRLX दबाएं
डिस्प्ले एरिया में अलग पोज़िशन पर ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए CTRLV दबाएं
देखें कि जब हम ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो यह अपने मौलिक स्थान से मिट जाता है
आगे डिस्प्ले एरिया में अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को कॉपी और पेस्ट करें
ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें कॉपी के लिए CTRLC और पेस्ट के लिए CTRLV दबाएं
देखें कि जब हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो यह अपने मौलिक स्थान से नहीं मिटता
डिस्प्ले एरिया को क्लियर करने के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें
सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए CTRLA दबाएं
एडिट मेन्यू पर जाएँ
क्लीयर पर क्लिक करें
अपने मौलिक स्ट्रक्चर पर वापस जाने के लिए एडिट मेन्यू पर जाएँ
उंडो पर क्लिक करें
या CTRLZ दबाएं
ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए कीबोर्ड पर डिलीट की का उपयोग करें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें
कीबोर्ड से डिलीट की दबाएं अब स्ट्रक्चर के भाग को मिटने के लिए इरेजर टूल का उपयोग करना सीखें
टूलबॉक्स से इरेजर टूल सेलेक्ट करें
माउस को किसी भी स्ट्रक्चर के पास रखें
स्ट्रक्चर का वो भाग रेड कलर में बदल जाता है
स्ट्रक्चर के रेड कलर वाले भाग पर क्लिक करें इसको डिलीट करने के लिए
अपना मौलिक स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए बदलाव को उंडो करें
अब फाइल को सेव करें
टूलबार पर सेव थे करेंट फाइल बटन पर क्लिक करें
इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैसे मौजूदा फाइल खोलें डिस्प्ले एरिया में टेक्स्ट कैसे ऐड और एडिट करें ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेलेक्ट मूव फ्लिप और रोटेट करें ऑब्जेक्ट्स को कैसे वर्गीकरण और पंक्तिबद्ध करें ऑब्जेक्ट्स को कैसे कट कॉपी पेस्ट और डिलीट करें एक नियत कार्य की तरह इरेजर टूल उपयोग करें और n आक्टेन स्ट्रक्चर को n पेंटाने में बदलें n हेक्साने स्ट्रक्चर को इथेन में बदलें नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
आई आईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद